यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

यह लोग यहाँ पर सिनेमा देखने आए हैं।

उस झोले में बहुत सारे बच्चे झूला झूल रहे हैं।

घांसों का रंग हरा है।

इस चित्र में हमें एक कमरा दिख रहा है।

इस दुकान में बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं।

मॉल के ऊपर वैल्यू एंड वैरायटी लिखा हुआ है।

मॉल के ऊपर एक कोचिंग इंस्टिट्यूट भी चलता है।

सड़क पर दो गाड़ियाँ भी चल रही है।

सड़क के बगल में एक विद्यालय भी है सड़क पर एक साइकिल भी चल रही है।

बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है।

कमरे में बहुत सारी कुर्सियाँ और टेबल लगे हुए हैं।

यह एक फैमिली रेस्टोरेंट है।

जहाँ लोग आकर खाना खाते हैं।

सब्जी में यहाँ पर बैंगन खीरा और कद्दू है।

पीछे एक और दुकान है जहाँ पर कुरकुरे और चॉकलेट्स बिक रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक गार्डन दिख रहा है।

इमारत के बाहर बहुत सारे लोग--

बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक है।

सड़क बहुत ही सुंदर है।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

जूतों का रंग भूरा और काला है।

कमरे में कुर्सियाँ रखी हुई है।

कमरे की छत पर एल_ई_डी लाइट्स लगी हुई हैं।

फूलों का रंग पीला और लाल है।

इस तस्वीर में हमें एक इमारत दिख रही है।

पार्क के अंदर बहुत सारे लोग--

इस तस्वीर में हमें एक इमारत दिख रही है।

यह एक जिम की इमारत है।

इस जिम के अंदर लोग जिमिंग करते हैं।

इस चित्र में हमें एक कमरा दिख रहा है।

तीन सोफे लगे हुए हैं।

एक ए_सी भी लगा हुआ है।

और इसकी खिड़कियों का रंग लाल है।

मैदान के बगल में बहुत सारी इमारतें भी खड़ी हैं।

और पीछे एक टी_वी चल रहा है।

यह एक फूलों का दुकान है।

विभिन्न-विभिन्न प्रकार के गुलदस्ते मिलते हैं।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

भूरे रंग की मिट्टी से बना हुआ है।

यह एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है।

हमें एक कमरा दिख रहा है।

सोफे पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक मार्केट दिख रहा है।

और बहुत सारे लोग उनसे सब्जी ले रहे हैं।

नीले और सफेद रंग का शर्ट पहना हुआ है।

लड़के ने घरी भी पहनी है।

इसने ब्लू कलर की जींस भी पेहनी है और ब्लू कलर का शूज भी पेहना है।

हमें एक पंखा लगा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक मैदान दिख रहा है।

पार्क में बहुत सारे वृक्ष दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक गैलरी दिख रही है।

दीवारों पर टाइल्स लगा हुआ है।

इस ऑफिस के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खरी हैं।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

एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है।

आके पूजा करते हैं।

कमरे का रंग सफेद है।

कमरे के फर्श पर बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं।

इस कमरे में बहुत सारे लोग हाथ ऊपर करके खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक--

एक इमारत दिखाई दे रही है।

यह एक हॉस्पिटल की इमारत है।

एक एस_बी_आई बैंक भी है।

इमारत के बगल में एक सड़क भी है।

कमरे में बहुत सारी बेंच और डेस्क लगी हुई है।

एक बेंच पर दो मार्कर भी रखे हुए हैं।